ये बहुत से डब्बे रखे हुए है।

एक शादी नजर आ रहा है लाइट लगी हुई--

ये एक मंदिर में दिखा रहा है और व्हाइट कलर का है

एगो तीन मुर्तिया नजर आ रही है

ऊपर विंडो लगा हुआ है एक दो तीन चार लोग बहुत सारे व्हाइट कलर के नीले कलर के और कुछ इसके